फुल दिया गया है और इसमें मार्बल टाइल्स भी बैठाया गया है।

आप जो देख रहे है एक अस्सी चित --

इसमें बच्चे बच्चियां खेल रही है गेम देख लीजिए आप।

और यहां पर मोटर भी रखा गया है।

और एक हाथ टूट गया है लेकिन फिर भी गरीब --

अब एक कार्टून है इसमे मछली रखी गयी है।